बनारस पब्लिक स्कूल यह पढिया का स्कूल है यहाँ पे बहुत सारे छोटे -छोटे बच्चे पढ़ते हैं।

बेठते है। खाते है। पीते है।